यहाँ कुछ लड़कियां डांस करती हुई दिखाई दे रही है ऊपर छत नज़र आ रही है छत का रंग सफेद दिखाई दे--

लाल पीला नीला नज़र आ रहा है टायर दिखाई दे रहा है टायर का रंग काला है।

पर्दा नज़र आ रहा है जोकि पर्पल रंग का है दो कुर्सियाँ दिखाई दे रही है कुर्सियों का रंग काला नज़र आ रहा हैं ।

दिखाई दे रहै हैं पेड़ों का रंग हरा नज़र आ रहा है मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है नीचे जमीन नज़र आ रही है।

मे जाली लगी हुई है जोकि लोहे की है उसका रंग काला नज़र आ रहा --

यहाँ एक सुंदर सी लाइटे नजर आ रही है आसमान नजर आ रहा है आसमान का रंग नीला नजर --